आढा हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक बड़ा सा कार भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है घर के अंदर दो चेयर दिखाई दे रहा और एक चेयर पे लड़का बैठे हुए दिखाई दे रहा।

और घर के बाहर कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रहा हैं बाहर में एक बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा हैं मंदिर में दो लड़का--

दिखाई दे रहा है एक बैठे हुए दिखाई दे रहा है और एक खड़े हुए दिखाई--

तीन लोग है अंदर जाने के लिए देख रहा है।

ये बहोत बड़ी मंदिर है और व्हाइट रंग का पोता हुआ है और कुछ मन मूर्तियां ऊपर बनी हुई है वो--

और अंदर लड़का लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है नीली रंग की दरवाजा भी दिखाई दे रहा हैं।

यहां बहोत बड़ा जिम दिखाई दे रहा--

और बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है।

सजा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ चेयर भी खब--

ये व्हाईट वाले बनियान पहना हुआ दिख रहा है।